चित्र के अंदर हमें एक गेट दिख रहा हैं गेट हमें दो पिल्लरों का बना दिख रहा हैं जो काले काले हैं।

पिक्चर के अंदर हमें एक भवन दिखाई दे रहा है जिसकी बहुत सारी खिड़किया दिखाई दे दो मंजिला दिखाई दे रहा है।

वह मिट्टी का बना हुआ इसमें दो दीवारे और सीढ़ियां भी दिख रही है कुछ मटके भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

मूर्ति जो सफ़ेद कलर की मंदिर में बैठी हुई है आस पास जाल रेड कलर की जालियां लगी हुई है कुछ स्टील की उसके पीछे कुछ लाल कलर का पर्दा टंगा हुआ है सफ़ेद कलर का पीछे फ दिवार दिखाई दे रही है नीचे कोई लाल गा--

मंदिर के पास में एक औरत लाल कलर की साडी एंड मास्क लगाए खड़ी हुई दिख- मंदिर की दीवारे सफ़ेद दिखाई दे रही हैं।

इसकी दीवारे डिजाईन करी हुई दिख रही हैं और उसके ऊपर की दीवारे सफ़ेद उसपर कुछ चित्र लगे हुए दिख रहे हैं।